बहोत सी गाड़ियां यहां पेट्रोल डलवाने आई हैं।

यहां सामने हम देख पा रहे हैं एक आदमी कपड़ा प्रेस कर रहा है।

और आगे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ सफेद रंग में है तो कुछ ऑरेंज रंग में है बहोत ही प्यारे लग रहे हैं।

सामने हम एक बहोत ही प्यारा रेस्टोरेंट देख पा रहे हैं।

जिस पर माता रानी कि प्रतिमा दिखाई दे रही है।

तथा बहोत से बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सफेद रंग की पौधे भी दिखाई दे रहे है।

जिसकी जोताई की गई है साथ ही दूर पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

देख पा रहे है कि कुछ ट्रके है रुकी हुई है।

प्रयोग करके सजावट किया गया है जो बहोत सुंदर लग रहा है।

साथ ही बिल्डिंग भी बहोत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है।

नीचे लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

बहोत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है।

पहाड़ के ऊपर और नीचे बहोत से पेड़ लगे हुए हैं।

साथी हम एक ग्रीन नेट देख पा रहे हैं।

और सफेद कलर के दो चेयर भी--

जो की बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।